आसमान में बादल दिखाई दे रहे हैं और यहां पे बहोत सारे पेड़ भी दिखाई दे रहे--

यहां पर काउंटर दिखाई दे रहा हैं।

दीवार में बहुत सारी स्ट्रिप्स टंगी हुई हैं।

यहां पे बहोत पुरानी एक इमारत दिखाई दे रही है।

यहां पर प्लास्टिक का रैक दिखाई दे रहा हैं।

यहां एक बर्तन में मछलियां दिखाई दे रही है।